एक कबिलवाला अह मकान दिखाई दे रहा है। जिसमे कोई प्राथमिक भलाई की कम लिखा हुआ है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जिस हे हरे कलर के काँच लगे हुए है। बहुत सारे एक साइड स्कूटर खड़ी हुई है।

हमे यहा एके स्टेज सजी हुई है। बहुत अच्छे से एक सामने पलंग भी सजा हुआ है। यहा साइड मे बहुत सारी कुरसिया लगी हुई है। जो की रेड कलर की है। एक साइड कुछ बच्चे बैठे हुए है।

बीच में यहाँ अह मकान बनते हुए दिखाई दे रहे है। यहाँ लोहे के पिंजरे बने हुए दिखाई दे रहे है। जिनको लोहे के पिंजरों को एक दूसरे सर से तार लगा कर जोड़ रहे है।

मकान बनी हुई दिखाई दे रही है बहोत से हरे भरे पेड़े दिखाई दे रहे मोटर साईकीले बहोत सारी खड़ी हुई --

यहाँ इस गेट मे बहुत सारी मूर्तिया बनी हुई दिखाई दे रही है ये छे खंबो मे अलग अलग हिसाब से मूर्तिया बनी अलग अलग--

दिखाई दे रही हैं लाईटी दिखाई दे रही है यह बहुत सारे यह लकड़िया सुखी फुकी पड़ी हुई ही दिखाई दे रही है डोरिया--

खिड्किया दिखाई दे रही बोर्ड लगी दिखाई दे रही यहा और बहुत सारी तस्वीरे लगी हुई कोई--